जो ये ग्रीन कलर के कपड़े में है और वहां के बच्चों को यह भाषण दे रही है।

ये जो हमको फोटो दिखाया जा रहा है वो एक वृक्ष का है जोकि हमको लाल --